ये इटाह का रेलवे स्टेशन है यहाँ पे टिकट घर है जहाँ पे टिकट मिलती हैं और यहाँ पर ये श --

ये हमको कोई सा कैफ दिख रहा है। ये कैफे में देखो को कॉफी कप वगैरा छपे हुए हैं। काफी अच्छा है।